अ बिना सिले हुए हैं ये सूट के कपड़ों मम --

जिसके में एक पोस्टर लगा हुआ है।

एक टीन सेट टाइप इमारत दिख रही है।